वहीं दूसरी ओर एक आदमी ने--

पेड़ पौधे हरे भरे काफी सुंदर लग रहे हैं।

आसमान पर काफी ज्यादा काले बादल भी नजर आ रहे हैं।

गेट का एक दरवाजा बंद है तो दूसरा दरवाजा खुला हुआ है।

आसमान में कुछ बादल भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर सामने एक लाल रंग की--

यहां पर एक हरे रंग की कुर्सी भी नजर आ रही है उसके साथ में एक सफेद रंग का बोर्ड भी है।

उन बच्चों ने हाथ में मोमबत्ती लिए हुए और पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं।

यहां पर सामने इमारत के नीचे कुछ भारत के झंडे की लड़ी बनाई हुई है।

इस चित्र में काफी सारे राउंड टेबल और कुर्सियां नजर आ रही है।